ये कोई एक मैन रोड की फोटो दिखा रखी है और इसके पास ही बड़ी सी बिल्डिंग भी हैं और बिल्डिंग के पास बहोत सारी गाड़ियां --

ये कोई कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पे रेत और पत्थर ही पत्थर हैं।

ये एक ग्राउंड की फोटो दिखा रखी है।

और नीचे बहोत सारे लोग भी खडे़ है और यही--

और ये एक बाइक भी दिखा रखी है। ब्लैक एंड रेड कलर में।

और यहां पे कैश डिपॉजिट और कैश विथड्रॉ किया जाता है और इस कैबिन के अंदर एक पंखा भी दिखा --

और यहाँ पे बहोत सारी लाइट्स भीं लगी हुई हैं।

और पीछे कुछ स्टीकर पोस्टर जैसे भी दिखा रखे हैं।

यह एक कैफे वगैरा की फोटो दिखा रखी है।

ये एक एस_बी_आई के बैंक का ए_टी_एम है उसकी फोटो दिखा रखी है और ऊपर एक बैनर लगा हुआ है।

जहां पे लोहे की टीन से ये बना रखा है रूम जैसा।

और ये एक चेयर भी दिखा--

यहां पे दूर दूर तक सिर्फ रेत और पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं।

जहां पे बच्चे और बड़ो के लिए गेम्स होते है अलग अलग तरह के गेम्स होते है।

एक बड़ा सा कोई पेड़ भी है एक नहीं यहां पे बहोत सारे--

ये एक कैफे की फोटो दिखा रखी है और इसमें ये दो दोस्त बे--

और यहां पे साइड में ये एक कोई अं पुलिया वगैरह भी बना रखा है।

दूसरी जगह पर रबड़ी वाली चीज है सारी एक जगह प्लास्टिक एक इकठ्ठा किया हुआ है।

और सामने एक बड़ासा गेट भी दिखाई दे रहा हैं।